यहाँ पे एक अ नदी है जिस पर पानी का बहुत ही कम स्पेस है। इसमें छोटा-छोटा बड़ा-बड़ा ईंटा और पत्थल है।

और आसपास में बौंड़री की हुई है और साइड साइड में रोड़ है और ये बाउंड्री के उस साइड बरा-बरा पेड़ है और और भी मकान हैं। बहुत सारे बादल दिख रहे हैं मुझे।

जो कि अंदर में है पैसा निकाल रहे है और ए_टी_एम के अंदर लाइट दिख रही है।

नदी के ऊपर से एक पुल गया हुआ है। यहा पे बहोत ही घने जंगल हैं। बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहे हैं। सन्लाइट दिख रही है।

सो प्लांट लगी हुई है बादल दिख रहे हैं।

और उसके पीछे पीछे पानी है जो कि ब्लैक ब्लैक दिख रहा है और --